यहाँ पे हम एक मंदिर देख पा रहे है उस मंदिर के भीतर हम एक बहोत बड़ा-सा गोल्डन कलर का भगवान का मूर्ति देख पा रहे है उसमें --

पेंडल भी देख पा रहे हैं इस पेंडल के चारों तरफ हम बहुत सारे छोटे बड़े पेड़-पोधे देख पा रहे है।